पेड़ है बहुत सारे इसी जैसे हैं।

बहुत से हम लोग पानी की गहराई तक जा सकते हैं और बीचो बीच घूम सकते हैं बहुत ही मजे कर सकते हैं | यहाँ पे बहुत सुंदर नजारा है ।

जैसे कि आप भी ये पिक्चर में देख पा रहें होंगे की ये दुकान है। दुकान से हम समान खरीदते हैं। सामान --